और इसके ऊपर कुछ लाइट्स वगैरा भी लगा रखी हैं।

और ऊपर इनके जो मेन हेड होते हैं वो खड़े हुए हैं और उनके हाथ में कुछ नोवल वगैरह भी है।

ये एक रोड की फोटो दिखा रखी है।